और आपको इसमें टेबल भी रखी हुई दिखाई दे रही होगी।

और दूध की थैली रखी हुई है।

जैसे कि यह किसी फंक्शन के फोटो है।

बैठे हुए लड़के ने दोनों ने वॉच पहन रखी है।

जैसे कि आपको ये लड़का दिखाई दे रहा होगा और इसके सिर में चिमटी लगी हुई है।

और आदमी भी दिखाई दे रहा होगा और पंखे भी दिख रहे होंगे।

और पीछे दुआर पर कपड़े भी टंगे हुए दिख रहे होंगे।

और गेट भी दिखाई दे रहा होगा और उनके आसपास मैडम भी खड़ी हुई है।

और टीनशेड भी डली हुई है और आपको पैढ़िया भी दिख रही है।

बोर्ड की अगली साइड में खिड़कियां लगी हुई है खिड़की पर पर्दे भी टंगे हुए हैं।

इस फोटो में बैलून लगे हुए हैं व्हाइट और हर एक कलर के।

जैसे की आपको दिख रहा होगा कि ये वर्कर्स काम कर रहे हैं।

और उरली साइड में एक आदमी भी दिख रहा होगा।

फोटो में शेरे शेरावाली माता भी दिखाई दे रही है।